कुर्सी भी रखी हुई हैं। ऊपर दो बड़ी बड़ी लाइट जल रही हैं।

यह एक पार्क जैसा है जहां पे कुछ गुंबद दिख रहे हैं बड़े बड़े।

गुंबद आगे चलके एक और है एक छोटा गुंबद है लाल और पीला।

यह एक बहोत ही यूनिवर्सिटी जैसा है जहां पे बहोत बड़ा सा गेट लगा हुआ है।

बड़ा सा भी रखा हुआ अंदर।

मशीन पे कुछ लोग बैठे के एक्सरसाइज भी कर रहे हैं।

सामने भी घर बने हुए हैं।

उसपे लिखा है कुछ और एक बहुत बड़ा सा चार्टर लगा हुआ है।

यह एक माल है जहां पे कुछ टाइटू बने हुए हैं कपड़ों के।

बहोत बड़ा सा एक लाइट जल रहा है रात का समय है।

बीच पे गोल गोल सर्कल भी बना हुआ है सामने एक बहुत बड़ा सा घर भी है।

सामने एक बहोत बड़ा सा किसी का टाइटू बना हुआ है उसको सब आदमी लोग देख रहे है।

अलमारी जैसे खाने में सब कुछ रखा हुआ है लाल कलर की लाइन ह--

यह एक कैंटीन है यहां पे कुछ लोग हैं जो कुछ खा रहे हैं।

एक जाली भी लगी हुई है एक बहोत बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है।

है जिसके ऊपर व्हाइट कलर की बहुत बड़ी सी लाइन से लाइट लगी हुई है।

काले कलर के दीवाल पे चित्र बने हुए हैं डिब्बो में सामान रखा हुआ है।